ये शायद हमें सर्विस सेंटर नजर आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे सिम कार्ड्स हैं।

और हम यहाँ पर दो अ गेट्स हमें नजर आ रही है साइड में एक बारी गेट है।

एक ऑरेंज कलर का कुछ शर्ट पहना हुआ है दोनों भी ऑरेंज कलर के अपने यूनिफॉर्म का कपड़ा पहना हुआ है और येलो कलर की उनकी कैप है।

ये एक किसी कल्चरल टाइप का बिल्डिंग हमें नजर आ रही है कंप्लीट बिल्डिंग तो नजर नहीं आ रही एंट्रेंस हमें दिखाई दे रहा है बहुत ही बड़ा द --

यहां पर हमें नजर आ रही है एक बेड है ये एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल का बेड नजर आ रहा है और इस छोटे से कमरे एसी भी है।

और प्रॉपर ए_सी हे प्रॉपर विंडोज हैं और इधर ब्लू कलर का बेड हैं।

लाइक कबाब मिलता होगा फिश मिलता होगा और बिरयानी और चिकन पीसेस तो ज्यादे मिलते होंगे बिकॉज बहोत सारे पिक्चर्स यहां पे लगी हुई हैं।

यहां पर हमे एक कपड़ो कि दुकान नज़र आ रही है जिसका नाम कैप्सेंस है और बहुत ही क्लीनेंस की कपड़ो की दुकान है जेनरल --

जिसमें नियॉन में लिखा हुआ है व्हाट पीपल थिंक करके--

एंड इधर रेड बुल भी मिलता है एंड जंबो और अमिताभ बच्चन की फोटो भी है।

हमें इधर एक जिम नजर आ रहा है बहुत ही अ बड़ा जिम नजर आ रहा है जहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने --

एक दूसरे को पास करते हुए लौरी के अंदर सामान को भर रहे हैं।

और एक यहाँ पर जो मजदूर काम करते होंगे उनका ये सारा सामान होगा और वो यहीं रहते हैं क्योंकि वो घर बनते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी मैट भी उन्होंने बिछाई हुई है।